फोटो में जो आपने देखियोडो लेकिन एक मजी बैडमिंटन फुटबॉल और बहुत अलग-अलग प्रकार का जय भिटनी खेल खेलन जानन--

पिछाड़ी मा जी उंका बैठणा की खातिर या फिर उंका व्यायाम कना का खातिर उंकी बैठक छन। व्ययाम करदी बख़त भोत ही बढ़िया छन लोग लगण लग्यां।

उंडे फुंडे ये ते बिस्कुट बिटिन भी सजायुं छ जु कि बहोत ही बढ़िया और स्वादिस्ट छ लगण लग्यूं।